वहाँ पे हमें बोहत -सी बैठने की चीजे दिखाई दे रही है तथा वहाँ पे हमें बोहत -सी खिड़कियाँ नजर आ रही है जोकि खुली हुई है वहाँ पे काँच भी लगे हुए है जोकि ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं।

यह इमेज में हमें एक फूलों का बगीचा दिख रहा है जोकि एक घर के सामने बना हुआ है वहां बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें अलग-अलग तरह के गुलाब लगाए गए--

पुराना है तथा उसके ऊपर गीले कलर का रंग दिखाई दे रहा है व ग्रे कलर के रंग में हमें एक प्रवेश द्वार वाली खिड़की दिख रही है जिसके अंदर हमें ईंटे रखी दिख रही हैं।

और लाल रंग के दिख रहे है वहाँ पे हमें फूलों के आगे एक बैनर दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है फूलों को ना तोड़े उसके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा जो कोई फूल तोड़ेगा यह बैनर ग्रे कलर का हैं।

यह इमेज में हमें बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो कि सफ़ेद रंग से रंगी गई है वो बिल्डिंग बोहोत बड़ी है तथा उसमे अलग-अलग रंग--